देखिए यहां डेकोरेशन कितना अच्छा है लाइट का भी व्यवस्था है।

बालू दिखाई दे रहा है इकट्ठा बालू है सब--

औ यहां पे बहुत लेडिस और जेंस है यहां पर भी भीड़ लगी हुई है।